ऊपर मैं एक बैनर है जिस रंग काला और लाल है वह लिखा हुआ है।

बाहर बहोत सारे झूले हैं।

पीछे बड़ी बड़ी पहाड़े हैं आसमान में बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं रस्ते में बहुत पानी है।

बाहर चार लाइटें लगाई गई है उनकी गेट को शीशा से बनाया गया है।

मैदान के दीवारों को ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।

कोटी वाले के ऊपर वेलकम टू लिखा हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा और सुंदर घर है पूरा घर बैंबू से बनाया गया है।

यह एक पानी में चल रही है पीछे बहोत ज्यादा घास है घास का रंग ग्रीन है।

ऊपर एक दुकान है जिसका नाम है लजीज पिज़्ज़ा ऊपर की इमारत बन रही है।

पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं सभी बच्चों ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है एक टीचर उन्हें देख रहा है कुछ टीचर सफेद रंग की कुर्सी पर बैठे हैं।

आगे में एक लाल रंग की बहोत बड़ी सी एक बिल्डिंग है उसके सामने बहोत सारी नारियल के पेड़ हैं ऊपर हेलीकॉप्टर है।

एक कपड़ों की दुकान है जिसका दीवारो का रंग सफेद है सामने में एक स्टोर मॉडल रखा गया है जिसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है उसके कमर में एक पतली सी रिबन बांधी गई है।

यह एक रूम है रूम के दीवारें येलो कलर से पेंट किया गया है सीलिंग में दो फैन चल रहे हैं सीलिंग में चार ट्यूबलाइट लगे हुए हैं सामने में एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है।

एक छोटी सी गराज है गराज में दो आदमी है एक आदमी बैठा हुआ है लुंगी पहने हुए उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है।

साइड में एक बहुत बड़ी सी इमारत है। इमारत का रंग सफेद है। इमारत के साइड में एक छोटा सा पेड़ है।

आसमान में बहुत बादल छाए हुए है।

नीचे बहोत सारे फूल रखें हुए हैं।